इ जहाँ पर कुछ बहुत सारे फल-फूल दिखाई दे रहे हैं पर पीछे बहुत सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं यह करकट का बना हुआ कोई का कोई दिखाई दे रहा है कुछ प पिलर लगे हुए हैं।